और और आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही सुंदर अच्छा सा व्यू दिखाई दे रहा है।

सब लोग अलग-अलग तरीके के कपड़े पहने हैं किसी ने पिंक गुलाबी कलर की शर्ट किसी ने हरे और किसी ने टी-शर्ट पहनी हुई है और वहां पे पेड़ पौधे --

सैटरडे क्या टाइमिंग है सब चीजें अलग-अलग तरीके से लिखी है और क्लाइंट कार्ड चार्टर अलग लिखा है।

एक और बिल्डिंग है जिसके बहुत अलग-अलग तरीके की बोक्सीस बने हुए हैं।

उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है वेज पिज़्ज़ा बर्गर और भी एक भैया खड़े हैं जो यहां पे स्टॉल लगा --

और हाथी के ऊपर एक बड़ा सा एक लड़का खड़ा है जो डंडा लेके खड़ा है और हाथी के पांव आधे से ज्यादा पानी में है।

दो अ पांच छह ऊपर डंडे पे बैठे हैं और बहुत आठ दस तोते नीचे बैठे हैं जो कि अलग-अलग कलर के हैं।

दो तीन अलग-अलग सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं मिट्टो जैसे --

बहुत अच्छे तरीके से लगे जो कि सिस्टमैटिकली गरी गरी एक लाइन में लगे हुए हैं।

जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं बहुत सारे कैबिन्स बने हैं जो ग्रे कलर की माइका से बने हैं।

और हर अलग कैबिन में अलग-अलग बटन और स्विचेस दिए हुए हैं।

और दो पॉट्स लगे हुए हैं जिस परे बहुत कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और टेबल भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा --

दीवार पे पोस्टर लगे हुए जो पीले कलर और सफेद कलर के हैं और इंडिया का मैप बना हुआ है।